और इसके सामने ग्रास जमा रखी है।

और सामने सभी दीवार टूटीं फूटीं पड़ी हुई है।

और बहुत सारे अनेक प्रकार के पेड़ पौधे भी है।